पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है काले कलर का चश्मा लगाया हुआ है पीछे कुछ रै-रैक है जिसमे कुछ किताबे रखी हुई हैं जिनका कलर सफ़ेद है |

नदी है। नदी का पानी मट मैला है और उसके ऊपर एक पल है जिसके नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

चट्टान है जो कि झरना है झरने में एक व्यक्ति हरी कलर की शर्ट और काले कलर का पेन्ट पहना और काले कलर का चश्मा लगाए खड़े हुआ है।

तम्बू है तम्बू के नीचे कुछ वाइट कलर के पिलर खड़े हुए है। कुछ लोग हैं इधर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

पिंक कलर का कुछ कपड़ा है ओहमे कुछ वाइट कलर के पहाड़ बने हुए हैं कोई ड्रामे का सीन है ।